यहा पर एक टेबल लाल कलर के हैं जो बैठने के लिए है।

ये एक जंगल का फोटो हैं जिसमें पाँच आदमी जंगल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें से दो ने लाल कलर का बैग पहरा हुआ है और आगे दो ब्लू कलर की टी टी शर्ट पहरी हुई है।

इसमें सामने तीन बॉटल में जिसमें गुलाबी सफेद और ब्लू कलर का कोई केमिकल रखा हुआ है और बाहर पोस्टर भी है।

और एक पंडित बाहर है और एक आदमी भी कुछ खरीद रहा है और बाहर एक ठेला भी है।

और कुछ लोग बाजू में खड़े हुए हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यह एक हिंदुओं का पवित्र स्थळ है जो घूमने लायक भी है और पूजा भी होती है।

जो हरे ब्लू लाल पीले जैसे कई रंगों से रंगे हुए है और इसके अंदर जाने की जाली भी ऑरेंज कलर की है और पीछे पेड़ भी हैं।

जैसे कि हम मिकी माउस वगैरा जैसी चीजे है और कपड़े भी है।

पर यहां पर लाइटे चालू है और कई सारे कपड़े भी रखे हुए है और खेलने कूदने की चीज भी रखी हुई है जो बच्चों के लिए है।

और एक स्कूटी व्हाइट कलर की भी जा रही है।

और यहां पर ब्लू कलर का सोफा रखा हुआ है जिस पे दर्दी बैठ सकते हैं औ --

और हरे कलर का टेबल भीं रखा हुआ हैं काउंटर पास --

खेत का फोटो है जो बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है।

और यहां पर रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा सजा हुआ है पीछे एक खजूरी का पेड़ भी है।

ये एक डी_जे साउं साउंड का फोटो है जिसमें बहोत सारे स्पीकर भी रखे हुए हैं।

यह एक कॉलेज की तस्वीर है जिसके बाहर हरियाली हरियाली छाई हुई है और कईं सारे नारियल के पेड़ भी है।

और नारियल के पेड़ छोटे और बड़े भी हैं सामने हरियाली है और रस्ता भी है।

और पीछे कही जात की बुक भी रखी हुई है और ऊपर लाइट चालू भी है।

और वेपर कईं जात के रखे हुए हैं।

मंदर का फोटो है जिसमें कई औरते और कई आदमी आ रहे हैं।

और एक बाइक सामने खड़ी हुई है ऊपर बादल बहुत ही ज्यादा छाए हुए है।

एक सर जी केयर का फोटो है जो बाहर से लिया गया हुआ है।

और कहीं बच्चे डॉक्टर के सामने खड़े हुए हैं और पीछे एक लाल कलर का और ब्लू कलर का गुब्बारा भी है।